दीवार को सफेद कलर से पेंट किया हुआ है।

ऊपर में बहुत सारा ट्यूब लाइट और पंखा भी लगा हुआ है।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

उसके ऊपर में मट्टी रखा हुआ है।